ह जिसके चारों तरफ म अ अंदर से एक रोड गया है रास्ता गया है जिसके दोनों साइड पेड़ लगे हुए है और जिसके बाहर साइड मे अ दोनों साइड मे बॉन्डरी है।

--जिसके आस जिसके साइड मे बोहोत सारे पत्थर रखे हुए हैं और जिसके बैक साइड मे बोहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

रोड साइड मे फ्रूट्स की अम्म दुकान है छोटी-छोटी सी अ फ्रूट्स ले के बैठे हुए है ।

ट्रावेल बस खड़ी हुई है। और एक स्कूल बस या कॉलेज बस है।

में पेंट किया गया है रेड और ऑरेंज का बाउंड्री के ऊपर कलर किया गया है जो मेन गेट बनाया गया है वो भी लकड़ी से ही बनाया गया है बहुत सारे ट्री --

जो कि बांस की और हरा बनी गई हुई है और कुछ लोग खड़े हुए हैं पुल के बाहर और कुछ लेडीज है कुछ गर्ल्स हैं कुछ जेन्स